यहां पर आप देख रहे हैं ये एक्सक्यूज मी रिजल्ट है जहां पर आप देख रहे हैं।

ऑफिस में एक मूर्ति भी लगी हुई है जो भगवान की है और यहां एक पंखा भी लगा हुआ है।

यहां पर आज कोई फंक्शन होगा और आप देख रहे हैं पंखे भी लगे हुए हैं जो काफी ज्यादा मात्रा में लगे हुए--

ये एक रेस्टोरेंट हैं रेस्टोरेंट में आप देख रहें है यहाँ पर बहोत सारी लाइटें लगी हुई है।

ये ठीक कर रहा है और ये बहुत ही अच्छा है। यह बहुत ही अच्छा काम है। जिसे सीखने में ज्यादा टाइम लगता है।

तो भी है यहां पर बीयर और दारू मिलती है कुर्सियां जो है ये काफी अच्छी है।

और एक यह मैदान है पीछे हरा भरा मैदान है जहां पर आप पेड़ भी देख रहे--

यहां पर आप देख रहे हैं ये पता नहीं कौन से पार्क का है हुड्डा पार्क है हुड्डा सिटी --

और इसकी कटिंग भी हुई हुई है जो काफी अच्छी लग रही हैं कटिंग करने वाले ने काफी--

यहां पे एक स्कॉर्पियो दिख रही है और एक बाइक भी खड़ी हुई है और एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है।

जो कुर्सी पर बैठा हुआ है और उधर एक ट्रैक्टर भी दिखाई दे रहा है।

यह आप देख रहे हैं यहां पर बहुत सारा पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ जगह पानी भी भरा हुआ है और हाली हाली भी दिखाई दे रही है।

यहां पर आप देख रहे हैं ये रेलवे ट्रैक है मुझे लगता है ये रेलवे ट्रैक रोहतक का है।

और टाई भी लगाई हुई है और ये सजावट इसके पीछे देख रहे हैं दिल से सवा सजावट की गई है।

जो काफी अभी छोटे हैं और एक तो बहोत ही छोटा है बराबर मे एक बाल्टी दिखाई दे रही है जो --

और ये घास ही खाता है हरी हरी और हरियाली चारों तरफ है जितना घास खा सकते हो पूरा खाओ पेट फाड़ के।

और उधर समझ नहीं आ रहा है क्योंकि अंधेरा हुआ है और यहां पर पंखे भी लगे हुए हैं।

और निकाल भी सकते हैं ये काफी आजा नजारा अच्छा है और ये रोहतक का है।